आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी --

बिस्किट रखा हुआ हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्राहक --

बहुत सारे पेेड़ पौधे लगे हुए हैं।

लोग एक्सरसाइज करने के लिये आये हुए --

लिखा हुआ है। यहाँ पे --

यहाँ पे पानी पीने के लिये --

रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्राहक --

मन्दिर है यह मन्दिर बहुत बड़ा है।

ताकि वो फिट रहें। वहाँ पे सब तरह --

इलाज कराने के लिए आते हैं।

इलाज करते है। वहाँ पे एक बाहर में --

दिवाली के टाइम में सजावट --

बहोत सारे आदमी आते हैं।

एक बड़ा सा गेट लगा हुआ --

बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे रोड के साइड --

गाय देखने में बोहोत सुन्दर लग रही है।

का है। यहाँ पे बहुत से लोग आए --

आदमी आये हुए है काफी पीने के लिये अहाँ --